यह एक बिल्डिंग बनी है और यहाँ कुछ पाइप --

यह एक सैलून के अंदर का दिख रहा है जहाँ दो मेन बैठे हुए हैं चेयर पर और यह जो बार्बर है वो एक के शेव बना रहे हैं।

यहां काफी कार्स खड़ी है ट्रक भी है।

यहां लिखा है डिस्पैच डॉक--